एक बेसमेंट लग रहा है और यहां पे दो तीन लोग खड़े भी हैं और यहां पे लाइट जली हुई है।

यहाँ पे बहुत सजावट की गई है और लगता है ये कुछ उ रेस्टूरने है और टेबुल भी लगी हुई कुर्सी भी लगी हुई है।

और इ अ यहाँ पर से आसमान भी दिखाइ दे रहा है।

और यहां पे नीचे से रेड कलर का कुछ बिछाया गया है।

ये श्री राम मैरेज होम है और ये बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमे बहुत सारी सजावटे की गई है।

अ ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एस बी आइ (--

एक बहुत बड़ा गेट भी दिखाई दे रहा है ऊपर से आसमान है पेड़ दो पेड़ भी हैं ग्रीन --

और यहाँ पे चार बाइक खड़ी है। एक तरफ से उ शटर गिरा हुआ है।

यहाँ पे उम बहुत बड़ा उम वो लग रहा है। प्लॉट हरी-हरी घास है। बड़े-बड़े पेड़ है।

ऊपर से आसमान है। दूर एक घर भी दिखाई दे रहा है। ये पेड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं और आधा ग्रीन है आधा --

ए ए यहाँ पे एक लाइट दिखाई दे रही है और ये दरवाजा खुला हुआ है।

यहा पे कुर्सियां भी लगी है लगता है ये हॉस्पिटल एरिया है और बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है और नीला पर्दा भी लगा --

मंदिर अच्छा लग रहा हैं और यहाँ पे ये पैन्ट बहोत अच्छा लग रहा हैं।

माँ लक्ष्मी देवी हॉस्पिटल है ईमर्जन्सी सेवा अभी उपलब्ध है इस पर--

झूमर मे उम झूमर बहुत अच्छा लग रहा है और एक और झूमर है और लाइट भी गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है।

यह एक खंडहर है। बाहर से बहुत बड़ा गेट है। अंदर से बहुत समान पड़ा हुआ हैं।

राजपूत बैठते है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल --